घर के बाहर बहोत सारे व्यक्ति खड़े हैं जिनमें बच्चे बूढ़े जवान सब शामिल हैं।

सामने ही एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा है जो कि फोन पर बात कर रहा है।

ऊपर में बच्चो के शर्ट टी शर्ट और लड़कियों के फ्रॉक इत्यादि टंगे हुए हैं।

यह एक रूम का दृश्य है जहां पर बहुत सारे पेपर्स में पेपर्स क्राफ्ट बनाए गया है।

यहां पे चावल के साथ साथ अनेक चीजें मिल रही हैं जिनमें बहुत सारी जगह बचत भी है।

यह एक घाट की तस्वीर है।

एक कतार में सजे हुए हैं।

पीछे बहोत सारी देवी देवताओं के मूर्ति रखे गए हैं।

उसके नीचे एक स्टील कि चेयर लगी हुई है बगल मे एक स्विच बोर्ड है।

गुरुद्वारे के आगे में एक बोर्ड है जीस पर गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा लिखा हुआ है।

ऊपर में ए_सी तथा पंखे लगे हुए हैं।